देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं।

इसमें कार पार्क हुए हैं।

कौन पार्क है। पार्क के अंदर झूले लगे हुए हैं। झूले पे बच्चे --